दो घर बंबू से बनाया वाला है।

ये तस्वीर एक बड़े तालाब की है।

मैदान के चारों ओर ब्लू कलर का फेंस बना हुआ है।

पाइनएप्पल प्लांट्स और पेड़ भी दिख रहा है।

लैंडस्केप में ग्रीन पिल्स और ट्रिस दिखाई मिल रहा है।

इसके बाहर का हिस्सा में लाल और नीले रंग है।

दुकान में किताबें की कई अलमारी है।

इन टुकड़ों को अलग अलग एनिमल और शेप्स में बनाया गया है।